चारों तरफ थोड़ा हल्का अंधेरा दिख रहा है।

सामने एक कार रखा गया है जिसमें झिल्ली लगा हुआ है एक भईया उसको सफाई करने के लिए कार उपर--

ये कोई सरकारी ऑफिस दिख रहा है बिल्डिंग --

ये एक खेलने का मैदान दिख रहा है।

अह बहुत ही सुंदर है जो इलेक्ट्रॉनिक में रहता है।

इस दुकान के अंदर एक बच्चा दिख रहा है।

है और लड़की लोग अ लड़का दोनों का है बेलन सजा हुआ है चेयर लोग सामने रखा गया है अभी नैनी ओपनिंग हुआ है ये जिम --

इक बगीचा दिख रहा है जिसमें मम्म कुछ घास लोग उगा है और ऊपर में अम्म वो--